येलो कलर की पर्दे दिखाई दे रहे कांच का बना हुआ घर दिखाई दे रहा है।

पिंक कलर का दीवाल नजर आ रहा जिसमें टी_वी लगी हुई दिखाई रही है हरे रंग का टेबल है जिसमें बहोत सारे प्लेट रहे हुए दिखाई दे रहे--

यह सैलून दिखाई दे रहा है जिसमें मूर्ति सैलून लिखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा हैं जिसके दीवाल का कलर व्हाइट हैं कुछ स्टीकर लगे हुए नजर आ रहे--

कुछ लोग चटाई बिछाकर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं पिंक और ब्लू कलर का पानी बोटल दिखाई दे रहा है पीछे भूरे रंग की कुर्सी नजर आ रही है।

अपना मार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है कांच का दरवाजा बना हुआ है।

व्हाइट कलर की स्कूटी नजर आ रही है।

व्हाइट कलर का लेकिन इस पर कुछ बनाया गया है बड़ा आंगन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बिल्डिंग में काले कलर के बोर्ड में लिखा हुआ नजर आ रहा है दुकाने नजर आ रही है।

ग्रे कलर का दीवार नजर आ रहा है जिसमें--

लाइट जलती दिखाई दे रही नीली टंकी नजर आ रही है।

सामने ग्रे रंग का टेबल नज़र आ रहा है तीन लोग बैठे नज़र आ रहे स्कैनर दिखाई दे रहा है फ्लावर पॉट नज़र आ रहा है इसमें झंडा दिखाई दे रहा है।

व्हाईट कलर का बोर्ड नजर आ रहा हैं जिसपे लिखा--

बेडशीट दिखाई दे रहा है वाइट कलर की टाइल्स लगी नज़र आ रही है दीवार में ग्रे टाइल्स लगी हुई है आधी --

दिखाया गया है जिसमें कार्स और बहुत सारे गिफ्ट के समान नजर आ रहे हैं टेडी बीयरस केयरिंगस वगैरह।